इस फोटो में मुझे एक मैदान दिखाइए दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बिजली के तार--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

इस फोटो में मुझे बर्तन की दुकान दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे किताबों की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे जानवर दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।